इस फोटो में हम एक होटल रूम देख सकते हैं।

अंदर एक बेड लगा हुआ है और बेड के ऊपर दो पिलो भी रखे हुए हैं।

इस फोटो में हम यलो कलर की फुल को देख सकते हैं।

पीछे से हल्का सा ग्रीन स्टेम भी निकला हुआ है।

छोटे छोटे बॉल जैसे शेप में यहां पर काफी सारे फूल्स रखे हुए है।

इस फोटो में हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का दुकान देख सकते है।

ई रिक्शा जैसी कुछ व्हीकल बेच रहा है और ये दुकान नया नया है।

यह फोटो एक मोबाइल के शोरूम का लग रहा है।

यहां पर काफी सारे मोबाइल्स देख सकते हैं।

पीछे का वाॅल पिंक कलर का है।

यह फोटो किसी स्कूल या फिर किसी कंपटीशन हॉल का लग रहा है।

और सारे बच्चे चार्ट पेपर्स और ग्लू वगैरे से कुछ बना रहे हैं।

इस फोटो में हम भारत पेट्रोलियम नामक एक नीले रंग के ट्रक को देख सकते हैं।

यहां पर एक इंसान बैठकर समान बेच रहा है।

यहां पर काफी सारे बड़ों के और छोटों के कपड़े भी लगे हुए हैं।

टेंट के पास एक इंसान बैठा हुआ है।

और यहां पर एक छत्ता टाइप का लगा हुआ है।

ये शाम का वक्त लग रहा है।

यहां पर घास उगे हुए हैं।

यहां पर काफी सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं।

इस फोटो में हमें एक इंसान सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह इंसान ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ है।

पिछे काफी बड़े बड़े पत्थर बने हुए हैं पत्थरों में फूल लगे हुए हैं।

इस इंसान ने हाथ में एक बोटल लिया हुआ है।

इस फोटो में हमें एक बड़े से गांव या फिर एक शहर का छोटा हिस्सा दिखाया गया है।

चारों तरफ छोटे छोटे बिल्डिंग्स बने हुए हैं।

मूर्ति के नीचे काफी सारे लोग खड़े हैं।

इस फोटो में एक रूम है।

इस रूम में काफी सारी महिलाएं योगा कर रही है।

ये लोग योगा एक रूम में कर रहे --

सभी ने अपना एक पैर उठाया हुआ हैं।

इस फोटो में हम दो भैंसे को देख सकते हैं।

दोनों भैंसों के गले में रस्सी बंधी हुई हैं।

पीछे हम बड़े बड़े पेड़ भी देख सकते हैं।

और ये बिल्डिंग काफी सुंदर डिजाइन से ऑरेंज ब्ल्यू येलो कलर्स के मिश्रण से बना हुआ है।

इस फोटो मे हम एक सलून देख सकते हैं।

सलून के अंदर चेयर्स लगे हुए है पीछे हम एक शीशा भी देख सकते है।

फोटो मे रथ यात्रा दिखाया गया है।

सुंदर लाइटिंग्स से सजे हुए रथ को काफी सारे लोग खींच कर आगे लेके जा रहे है।

औ यहाँ पर बहोत सी भीड़ जमी हुई है।

है ऊपर की ओर लाइट भी लगा हुआ है और पीछे की तरफ हम एक बिल्डिंग भी देख सकते हैं।

और चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ भी मौजूद है।

और इस जगह पर काफी धूप भी आ रही है।

इस फोटो में हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का देख सकते हैं।

यहां पर एक छत की ढलाई हो रही है।

कुछ लेबर सर पर सीमेंट रखकर ऊपर आ रहे हैं।

के सामने मैट भी बिछा हुआ है और एक सुंदर सा लाइट भी जला हुआ है।

और एक सुंदर सी मूर्ति भी बनी हुई है।

इस फोटो में ये काफी सुंदर सा दृश्य दिखाया गया है।

और सामने की ओर काफी जंगल भी बने हुए हैं।

इस फोटो मे हमे एक प्रकृति का बहोत ही खूबसूरत दृश्य दिखाया गया है।

यहां पर चारों तरफ बहुत दूर दूर तक बहुत सारी हरियाली ही हरियाली है।

सामने एक बड़ा सा पानी का एक तालाब जैसा दिख रहा--

आसमान भी बहोत साफ है और दूर हम पहाड़ भी देख सकते हैं।

दो लोग एक बड़े से टाइल्स के पीस को लेकर कहीं जा रहे है।

इसके सामने एक इंसान भी खड़ा है।

उनके पीछे हम बड़ा सा एक गोडाउन भी देख सकते हैं।

और इस प्लेट में हमें जिलेबी दिखाई दे रहा है।

प्लेट के नीचे हम एक कड़ाही देख सकते हैं।

और ये प्लेट सिल्वर कलर का है।

इस फोटो में हम एक समुद्र तट जैसा कुछ देख सकते हैं।

दूर हम बड़े बड़े पहाड़ भी देख सकते हैं और आसमान में काफी बादल छाया हुआ है।

यहां पर एक इंसान सामने चेयर पर बैठा हुआ है।

और ये नाई इसकी बाल काट चुका है।

इस इंसान के सामने हम एक मिरर भी देख सकते हैं।

इस इंसान के पीछे एक गेट भी बना हुआ है।

गेट के अंदर खूब सुंदर सा एक पर्दा भी दिखाई दे रहा है।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

आसमान में काफी सारे बादल भी दिखाई दे रहे है।

यहां पर एक लंब सा करेंट का वायर भी जाता हुआ देख सकते है।

इस फोटो में हम एक बहुत ही खूबसूरत सी फूल को देख सकते हैं।

यह पेटल्स रेड कलर के है और आखिर की ओर वाइट कलर के है।

यहां पर हरे हरे पत्ते भी बने हुए है।

पीछे की और हम थोड़े बहोत घास फूस भी देख सकते हैं।

अच्छे से डब्बे के अंदर काफी प्राचीन पत्थर जैसे दिखने वाले कुछ रखे हुए हैं।

बाहर में ताला भी लगा हुआ है।

इस फोटो में हम एक छोटा सा गड्ढा देख सकते हैं।

जिसके ऊपर का लीबर खोल के एक इंसान काम कर रहा है।

ये इंसान ग्लव्स और टोपी और मास्क भी पहना हुआ है।

ये किसी एक कंस्ट्रक्शन साइट या फिर ऑफिस का साइट लग रहा है जहां पर बड़े बड़े मशीन्स बने हुए हैं।

ये फोटो किसी फल के दुकान का लग रहा है।

और दूसरी तरफ हम एप्लस भी देख सकते हैं।

यहां पर हम एक इंसान को पैसे गिनते हुए भी देख सकते हैं।

यहाँ पर काफी सारे लोग काम कर रहे हैं।

एक इंसान सर पर ईंटे लेकर कहीं जा रहा है।

इस फोटो में हम एक शॉपिंग मॉल देख सकते है।

मॉल का ये वो सेक्शन है जहां पर काफी सारे बर्तन मिल रहे हैं।

यहा पर एक महिला ग्रीन कलर की साड़ी पहन कर बैठी हुई है।

साइड में हम एक इंसान भी देख सकते हैं।

इस फोटो में हमें एक चर्च का फोटो दिखाया गया है।

ये चर्च लाल कलर का है।

इस फोटो में हमें क्रिकेट बैट्स दिखाया गया है।

यहां पर अलग अलग ब्रांड के क्रिकेट बैट रखे हुए है।

इस फोटो में किसी बिल्डिंग या फिर एक किसी घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है।

एक इंसान खड़ा है जिसके हाथ में एक मोबाइल और पीठ में एक बैग टंगा हुआ है।

यह फोटो किसी कैफे का लग रहा है।

सामने कॉफी बनाने वाला एक बड़ा सा मशीन भी लगा हुआ है।

इस फोटो में हम कुछ लड़कों को देख सकते हैं।

जो की स् लाल कलर के कपड़े पहनकर एक साथ फोटो खींच रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक सुंदर सा घर दिखाया गया है।

पूल के बाहर उनके पेरेंट्स लग रहे हैं देखने में।

यह फोटो किसी मार्केट का लग रहा है जहां पर कई सारे दुकानें हैं।

पर बहुत भीड़ भी जमी हुई है।

सामने ही एक अजंता डेयरी नामक का दुकान है।

ये सब ब्रिंजल कलर के टी_शर्ट पहने हुए हैं।

पीछे एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है।

इस फोटो में हम एक सड़क देख सकते है जिसकी दोनों तरफ काफी सुंदर से जंगल बने हुए है।

इस रास्ते पर स्ट्रीट लैंप्स भी बने हुए है।

यहां का मौसम काफी ठंडा सा है और आसमान पर काफी बादल छाए हुए हैं।

इस फोटो में हमें एक फ्लोर में काफी सारी मिर्ची दिखाई दे रहे हैं।

और हम देख सकते है की एक इंसान इन मिर्चियों को छांट रहा है।

यह दृश्य किसी एक सब्जी के दुकान का लग रहा है।

यह फोटो किसी बाजार का लग रहा है।

यहां पर काफी भीड़ जमी हुई है।

यहां पर कई सारे लोग फूल बेच रहे हैं।

यह फूल काफी सुंदर लग रहा है।

नदी के ऊपर काफी बड़ा सा एक ब्रिज भी बना हुआ है।

यहां पर सूरज काफ़ी जोर से चमक रहा है।

ये सब वहीं पे घास खा रहे हैं और इनके चारों तरफ एक रेलिंग जैसा वायर से बना हुआ है।

पीछे की तरफ हम काफी बड़े बड़े पेड़ भी देख सकते हैं।

इस जगह पर काफी धूप भी आ रहा है।

इस फोटो में हमें एक होटल रूम दिखाया गया है।

साइड में एक स्विच बोर्ड भी बना हुआ है।

वाल्स का कलर क्रीम कलर का है।

इस फोटो मे हम एक मिनिएचर मॉडल देख सकते हैं।

वुड की हेल्प से एक सिटी को डिजाइन किया गया है जो कि छोटा सा है बट काफी सुंदर सा दिखाई दे रहा है।

नीचे का फ्लोर ब्ल्यू कलर का है पीछे भी वाल्स लगे हुए हैं।